ये एक शादी का हॉल है और इसमें बहोत सारे लोग हैं।

ये एक होटल जैसा है और एक लड़की है जो की खड़ी है बैग लेके--

यह एक घर है। घर के आस पास टायल्स रखा हुआ है।

एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहोत सारे चेयर लगे हुए हैं एक लोग बैठ खड़ा हैं।

अंदर लोग हैं साइकिल बच्चे चला रहे हैं अंदर पेड़ हैं।

स्टेशन है जहां के बहोत लोग हैं।

कोई मोबाइल चला रहे है कोई टिकट निकाल रहे हैं कोई फोटो खींच रहे हैं।